मुझे इस फोटो में एक खेत दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में कुछ बाइक दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे दो लैंप दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक घर बनता दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कुछ ड्रम दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे कुर्सियाँ दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ लाइटें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे एक गदा दिखाई दे रही है।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

इस पोस्टर में मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे मुझे लाइट की डेकोरेशन दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ लकड़ी की कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ झूले दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे एक कांच की खिड़की दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में एक कांच की खिड़की दिखाई दे रही है।